घर मंदिर लउकता। कुछ बोअल बा। फेड़ बा। घन बा। फेड़ रुख लउकता। अच्छा लागता।

रास्ता लौउकता कुछ बोवल बा बहुत सुन्दर लाग --

घर बा रास्ता बा स्कूल बा बरगद के पेड़ बा कुछु बोअल् बा अच्छा लागा ता सुन्दर लागा ता।

आसमानी ऑरेंज कलर के जमीन कुछु बोअल् बा फल फूल वूल बहुत सुन्दर लागा ता अच्छा लागा ता देखै में।